और में लाइट जाल रहा है और अंदर में बहुत सारा लाइट हैं और बहुत ही अच्छा से सजाया गया हुआ है इसको और इधर भी दोगो स्टेचू हैं इसको को भी कोट पहना हुआ है ।

एक आदमी अपने हाथ मे बच्चा लिया हुआ है एक आदमी के हेलमेट लिए हुआ है हाथ में दो वाइट स्कूटी लगा हुआ है एक लेडीज खड़ा है सैलून के ऊपर एक आदमी खड़ा है।

यह फूल का बगीचा है एंड इसमें सिर्फ गेंदा का फूल है और यह पीला-पीला फूल है जो बहुत बड़ा-बड़ा है ।